हेलो गाइज मैं ये जे फोटो दिखा रहा हूं आप लोग को यह एक हॉस्पिटल का फोटो है देखिए कितना नौजवान डॉक्टर है बहोत ही अच्छे हैं ये सब।

एक सबसे बड़ा फिर एक मिडिल फिर एक उससे भी छोटा एक था उससे भी छोटा। देखिए पैंट कितना ही गज़ब का किया गया है।

हेलो गाइस आप लोग देख सकते की रोड़ खना रहा है | रोड़ पे ही एस बी आई बैंक दिख रहा होगा देखिये कितना मस्त नज़ारा देखने में लग रहा है।

हेलो गाइस आप लोग देख रहे होंगें की बीच जंगल का मैदान का फोटो है। देखिये कितना अच्छा जगह है। कितना ही बढ़िया लग रहा। जैसे की इस शक्श का हेलमेट देख रहें होंगें। यहाँ मतलब दो जने से --

हेलो गाइस आप लोग देखिये कितना गजब बहुत ही मस्त है बोहोत ही गजब का है। इसके बारे में आपको बता दूँ यह घर स्टील का गेट लगाया गया है बोहोत ही अच्छे तरीके से--

पुलिस वाले भी आप लोगों को दिख रहे होंगे फोटो में गाइज । यह पीछे हरियाली देखे कितना गजब का हरियाली है। आज की डेट मैं इतना हरियाली मिलना मुश्किल है गाइज --